इसके आगे एक बहोत बड़ा तिरंगा लगाया हुआ है।

यहां पर बहोत बड़ा घर दिखाई दे रहा है।

रूम की सजावट बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है।

इस पहाड़ों के ऊपर से घने बादल--

यहां पर बहुत से घर दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर बहुत बड़ी ज्वेलरी शॉप दिखाई दे रही है।

उसके हाथ ही दिखाई दे रहे हैं।

इस दुकान के अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

यहां पर मुझे एक हिमाचल हॉस्पिटल ऑफ मेंटल हेल्थ रिवैल्युएशन शिम--

साथ में ही एक खिड़की बहुत बड़ी दिखाई दे रही है।

यहां पर बहोत बड़ा बस स्टैंड दिखाई दे रहा है।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

और बैड के साथ सोफा टेबल दिखाई दे रहा है।

इसमें सोफे का कलर ब्लैक नज--

यहाँ पर मुझे बहुत सी सुंदर सी सड़क दिखाई दे रही है।

और इस सड़क पर एक सुंदर सा मोर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

और यह सड़क के किनारे छोटे छोटे फूल दिखाई दे रहे--

यहाँ पर मुझे सुन्दर्स सुंदर सा हॉल दिखाई दे रहा है।

और लाइट्स बी नज़र--

दिखाई दे रहे हैं साथ में आसमान--

यहाँ पर मुझे एक शॉप दिखाई दे रही है।

और इनके ऊपर भी कुछ सामान दिखाए।

यहां पर मुझे शांति नारायण कुटीर दिखाई दे रहा है।

और एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है और एक और जो की बहोत ही--

और इसकी सीढ़ियाँ इतनी सुंदर दिखाई दे रही है।

इन बिल्डिंग के नीचे से बहोत सी शाॅप्स नजर आ रही है।

इसमें दो दो कुर्षियां नजर आ रही है।

और एक टेबल दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर मुझे बहुत सी बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं।

यहाँ पर मुझे एक जिम दिखाई दे रहा है।

भरे भरे लगे दिखाई --

और इसके आसपास बहुत सी छोटी-छोटी--

सुंदर सी झाड़ियाँ नजर आ रही है।

यहां पर मुझे बहुत से जूस दिखाई दे रहे है।

जिसके बाहर से बहुत बड़ा शीशा दिखाई दे रहा है।

इसके चारों तरफ बहुत से बड़े-बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं।

इस टेबल पर कैलकुलेटर--

इसके पीछे बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं।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

जो की व्हाइट कलर का नजर आ रहा है।